ऊपर कुछ लोग दिखाई दे रहे है।

आगे एक घना सा जंगल दिखाई दे रहा है।

पुल बहुत ही मजबूत दिखाई दे रहा है।

ज्यादातर मछलियां मरी हुई दिखाई दे रही है।

यह एक मछली के दुकान का तस्वीर है।

यह एक एच_डी_एफ_सी बैंक के सामने का सीन है।

दुकान बहुत बड़ा सा लग रहा है।

यह एक नदी के किनारे का फोटो लग रहा है।

यह एक साइबर कैफे का तस्वीर है।

सारे खिड़कियों में पर्दे भी लगे हुए है।

एक महिला पौधों में पानी देती हुई दिखाई दे रही है।

मंदिर में दीप भी जलाए गए हैं।

यह एक मंडी का तस्वीर है जिसमें बहुत सारे लोग खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

रोड के किनारे हरि हरि घासे हैं कच्ची सड़क बनी हुई है।